एक बिल्डिंग बन गयी है और जिसपर हरी-हरी नेट लगी दिखाई दे रही है।

सामने की तरफ एक बोर्ड लगा है और एक कुर्सी रखी है सामने की तरफ ईंट रखी हुई दिखाई दे रही हैं |

एक पोडियम जैसा बना है जिसमे अंकल खड़े हुए दिखाई दे रहे है साइड में एक भईया ड्रम बजा रहे है और पीछे की तरफ एक भईया गिटार बजा रहे है।

भगवती मिल्क पार्लर लिख शांति नगर लिखा हुआ है सामने की तरफ काफी सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है अंदर दुकान में काफी सारा सामान हैं ।

साइड में एक खिड़की खुली हुई है साइड में एक गेट भी लगा है पीछे की दिवार में एक स्विच बोर्ड है और एक तस्वीर बनी है।

पीछे काफी सारे पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे है पीछे आसमान भी दिखाई दे रहा --

और साइड में एक बोर्ड भी लगा है जिसमें कुछ लिखा हुआ है बैठने के लिए भी उसमें जगह दी हुई हैं |